बहुत अच्छा डेकोरेशन हे लाइट बहुत अच्छे लगे हे डिजाइन में म्यूजिक लाइट खम्भा-खम्भा जइसे लगत हे ओहु पीला कलर के अउ एति खिड़की-खिड़की बने हे बहुत--

यह कुछ फैक्ट्री का फैक्ट्री म बहुत लोहा लंकर मशीन हे बहुत बहुत बड़े मशीन लगे हे।

औ आकाश दिखत हे लाइट तार खम्भा दिखत हे फटफटी गाड़ी हे।

आवास घर बने हे आवास घर मे बोरी-बोरी आऊ का माड़े हे।

शो पत्ती हे अउ सेटरिंग होवत हे अउ ए छोटे-छोटे पौधा मन ह बहुत सुंदर लगत हे ए मंदिर बनत --

इहा जइसे मेला लगे हे कहु क बहुत बड़े दुकान लगे हे अउ मंदिर हे कोई देवी स्थल जगह ए।

अति कन खाई हे पाकिट पाकिट वाला दुकान ए किराना दुकान--

रोड हे हरा-हरा पऊधा हे पुल हे मस्त पुल बँधाये हे।

लाइट लगे हे पौधा हे अउ ]